यहा हमें बहौत बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी के साइड में किनारे पर बीच पे हमे काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़े-बड़े पत्थर हैं।

यहाँ हमे एक बहोत ही सुन्दर सा व्यू दिखाई दे रहा है दूर है बड़े बड़े पहाड़ और उसमे ऐसा लग रहा है जैसे आसमान उड़ रहे हो पहाड़ों के बीच और इधर सामने हरा भरा मैदान।

यहां हमें एक बहोत सुंदर सी नदी दिखाई दे रही है नदी का पानी बहोत ही साफ सुथरा है ये बड़े-बड़े पत्थरों से टकराती हुई बह रही है।

यहाँ हमें एक बहोत ही सुंदर सा जो है चौरयाहा दिख रहा है ये किसी-सी गार्डन का व्यू भी हो सकता है जिसमें बीच सेंटर में अ-आजु-बाजु हरे भरे पेड़ हैं बीच सेंटर में एक ब्लैक कलर का चबूतरा बना हुआ है उसे पर एक मूर्ति है।

यहाँ हमें एक बहौत बड़ी जो हे बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग क येलो और ब्राउन कलर से पेंट है काफी सारी इसमें खिड़कियां हैं।

यहाँ हमें बहौत सुंदर सी दुकान दिखाई दे रही है दुकान पे ग्रीन एंड वाइट कलर पेंट है सामने एक कांच का काउंटर है।

कुछ यहाँ पे पोस्टर चिपके हुए हैं रूम मे काँच की एक टेबल रखी हुई है उसके ऊपर एक लैपटाप या पी.सी. हमे दिखाई दे रहा है टेबल्स के आस-पास चेयर्स रखी गयी है।

यहाँ हमे जो बहौत बड़ा जो है बिल्डिंग या घर दिखाई दे रहा है जोकि वाइट एन्ड रेड कलर से पेंट है इस बिल्डिंग के निचे बहौत सारा स्पेस हमें अवेलेबल दिख रहा है।

यहां हमें एक बहुत बड़े-बड़े जो हैं ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं इन पत्थरो के बीच में से हमें नदी बहती हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर हमे एक बहौत बड़ी जो है व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है कार के बगल मे बहौत ही बड़ा एक सुंदर सा घर है।

जिसपे लाइट येल्लो कलर पेंट किया गया है काफी सुंदर ये घर है उसके बगल मे एक और बहोत लाइन से हमे बड़े-बड़े घर बने दिखाई दे रहे है।

या हमे एक बहोत ही सुन्दर सी बहती हुई नदी दिखाई दे रही है शांत नदी है बिल्कुल नदी में काफी सारे बड़े-बड़े पेड़ो कि हमें परछाई दिखती हुई बहोत ही सुन्दर लग रही है।